यह फोटो एक रोड से दिखी हुई एक पेट्रोल पंप की फोटो है।

और बहोत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं।

और यह बहोत ही सुंदर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक डांस क्लास की फोटो दिखाई दे रही है।

नाम है श्री महंत हरी--

और इन लोगों ने दो बैनर भी पकड़ रखे है।

में चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और इसमें कुछ डियर भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहोत सारे तरह तरह की आइसक्रीम मिलती है।

ये कुछ घास और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बनाए जाते हैं उसकी फोटो दिखाई दे रही है।

जिसमें तरह तरह के बहुत सारे खिलौने दिखाई दे रहे है।

मेन मेन्यू लगे हुए हैं और एक--

यहां फोटो एक बड़े से पेट्रोल पंप की फोटो है।